और गुच्छे में है काले अंगूर है अंगूर --

और अअ इसमें जो हे एक अलमारी जैसा बनाया गया है वहां पे रखा हुआ है अलमारी टाइप --

ग्रील लगा हुआ है घर है और दोनों एक फोन पे बात कर रहा है।

जिसमें नया-नया गाछ लगाते है वैसा और यहाँ जो है सोस नदी है।

और सिर्फ और सिर्फ़ रास्ता यहां नजर आ रहा है।

कुर्सी-उर्सी लगा हुआ है और बहुत सारे चेयर लगे हुए है यहां।

होटल रूम ही है क्योंकि यहाँ सी.सी.टी.वी. कैमरा लगे हुए है।

इस वीडियो में बहुत सारे आदमी नजर आ रहे हैं।

और डब्बा जैसा यहां पे कुछ बनाया हुआ जैसे उसमे ललल रखने वाला हो।